तथा दूसरा लड़का उसके बाल की कटिंग कर रहा है।

यह एक कॉफी का स्टाल है जिसमें की एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी कॉफी को बेचते हुए नजर आ रहा है।